यह एक सीधा रास्ता है यहां पे लेफ्ट साइड में खड्डा किया हुआ है उनमें एक मिट्टी भी उठी हुई है।

यहां पे मट्टी पड़ी हुई है लेफ्ट साइड में बहुत सारे भी रखे हुए और लेफ्ट साइड में भी एक घर है और --

यहां स्केटिंग कुर्सी भी रखी हुई है ब्लैक कलर की जो कुर्सियां हैं यहां पे इस दुकान में--

और यहां पेपर सामान यूज किया गया नीचे बड़े बड़े इसमें बहोत सारा पानी दिख रहा--

बहुत सारे डब्बों में बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहां पे बोर्ड भी लगाया गया है नंबर भी है दुकान का नाम भी है यहां पे छोटे से ले के --

ये एक जिम की दुकान है यहां पे बहुत सारी कुर्सियां टेबल रखे हुए बेड के --

टेबल्स हैं बहोत सारे टेबल्स चारों तरफ लगाए गए हैं और यहां पे बहोत सारे पत्ते मिट्टी पड़े हुए हैं और वहां पे--

यहां पे बहोत सारे लोग से व्यू कर रहे है आजू बाजू पहाड़ है ऊपर आसमान दिख रहा है और नीचे बड़े बड़े--

ये एक मंदिर है और उसमें छपरी है और यहां पे भगवानों को ऊपर बिठाया गया है और यहां पे एक बच्चा भी है।

आप झुक रहे हैं प्रणाम कर रहे है यहा पे बड़े बड़े भगोने भी है और यहां पे टिन शेड मारा गया है।

ये हैंड वॉश रखा गया है बाथरूम के बनाने का समान है यहां पे टेबल यहां--

और यहां टोकरिया में पॉट में छोटे-छोटे प्लांट्स भी रखे हुए हैं और यहां पे आलू ब्लै की दीवार भी उठाई गई है ।

यहां पे बड़े-बड़े कार हैं नए नए कार का शोरूम है यहां पे ब्लै सिल्वर कलर के --

ये बड़ा सा झूलों का गा यहां पे बड़ी सी--

ये गया और यहां पे खंबा है ऊपर उसके वायरिंग भी की यार यहां पर ऑरेंज लाइट भी चमक रही--

एक बॉक्स को रखा जाता है यहां पे आसमान दिख रहा है नीचे मट्ठी दिख रही है जमीन दिख रही है।

ये एक क्लीनिक है यहां पे हैंड सेनीटाइजर और हैंड वॉश बनाया गया है।

और यहां पे लकड़ी का बड़ा सा तख्ता भी है गाड़ी साइकिल अपने यहां पे लड़की लड़के सब लोग खड़े हुए और मोबाइल भी यूज कर रहे है पैसे भी निकल रहे है ए_टी_एम में से--